सामने शोरूम है जिसमे शोरूम में गेट है ब्राउन कलर का ऊपर बोर्ड भी लगा हुआ है जिसमे हुंडाई लिखा हुआ हैं।

और सामने बिल्डिंग दिख रही है जो येलो कलर से पेंट की हुई है।

और सीरीज से डेकोरेशन किया हुआ है।

अअअ पत्तल वे के लिए दो नीर भरे हुए हैं एक लड़का खड़ा हुआ है।

और बेठने के लिए सिट बनी हुइ है और पीछे घास है और पेड़ पौधे हैं।

मैं एक अ ट्रांसपरेंट ग्लास रखी लगी हुई है गे --

हाँ मुझे कुछ लोग दिख रहे हैं और ज़मीन पे अ पहाड़ बना हुआ है कुछ नक्सा दिख रहा है।

और एक आदमी स्लाइड करते हुआ नीचे आया है एक बच्चा है।

ओ डेकोरेशन किया हुआ है ग्रीन कलर की लाइट्स जल रही है।

मेरे सामने बहोत सारे कैंडल जले हुए है बहोत सारे लोग हैं।

यहां पे माता जी की मूर्ति रखी हुई है और उनके बगल में बहुत सारे माता जी इनको लाइट से अच्छे से डेकोरेशन किया हुआ है।

यहाँ सामने मुझे पेड़ पौधे दिख रहे हैं गमले रखे हुए हैं टप रखा हुआ है।

बहुत सारे कमले रखे हुए हैं यहां पे --

और मारुती सुजुकी और एड्रेस अरेना लिखा हुआ है उस पे--

पत्थरों के ऊपर खड़ा हुआ है पोज देते हुए।

बाल्टी रखी हुई हैस्टील की पंखा लगा हुआ है।

यहां सामने बैठने के लिए बहुत सारी सीट रखी हुई हैं।

पीछे पेड़ दिख रहा है एक टावर दिख रहा है पीछे एक घर बना हुआ है।

हां मुझे स्विमिंग पूल दिख रहा है।